इस बिल्डिंग में तीन भी दिख रहा है।

उस टी_वी के अंदर क्रिकेट मैच खेलते हुए दिख रहा है और इस तस्वीर में इंसान लोग भी दिख रहा है और इस तस्वीर में लाल रंग की कुर्सियां भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पंखा दिखाई दे रहा है और ट्यूबलाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे पे यूजिंग एनी यू_पी_आई ऐप लिखे भी दिखाई दे रहा है।

और उस बिल्डिंग में बहोत सारा खिड़कियां भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के अंदर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा खिड़कियां और दरवाजा भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पेड़ पौधे भी दिख रहा है।

और एक बड़ा सा दर्पण भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दीवारों पर सब्जियों का तस्वीर लटका हुआ भी दिख रहा है।

है और फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

और पहाड़ भी दिख रहा है इस तस्वीर में मुझे आसमान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो बड़ा स्क्रीन भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ग्लास का अलमारी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है और ट्यूबलाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे आचार भी दिख रहा है।

और थोड़ा सा पेड़ भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक मोबाइल फोन भी दिख रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे झाड़ू भी दिखाई दे रहा है और अंडों का बेग भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कढ़ाई भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे घास भी दिख रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में एक अदमी बोटल से पानी पीते हुए देख रहा है।

और आदमी के दाएं हाथ पर लाल रंग का रस्सी बांधा हुआ दिख रहा है।

उसमें स्नैक बार लिखके भी दिखाई दे रहा है।